एक बहुत बड़ा नदी है नदी में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं लग रहा है आसपास में मंदिर होगा।

यह एक खंडहर जैसा लग रहा हे बहुत अंग्रेजो के ज़माने का यह राजा महराजा के ज़माने का बना हुआ लग रहा हे इसमें छोटे छोटे खिड़किया--

दो पहिया वाहन बीस रूप ए जीप कार सो रूपए और बसु बस दो सो और कैमरा फीस प्रति पांच सौ और पांच हजार--

एक डिस्को बार है जैसे लग रहा है ये अधिकतर --

बुक पेन गिफ्ट गैलरी दुकान है यहाँ पे हर प्रकार के गिफ्ट रखे गए है लिए लड़कियों के मूर्ति है भगवान के मूर्ती है और फोटो फ्रेम है कप सेट है।

बिल्डिंग में कई छत का बिल्डिंग हैं लग रहा है पूरी कॉलोनी है जैसे अभी रात का समय हैं यहाँ पे और भी बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई किये हैं या फिर कुछ बन रहा है।

बहुत सारे लाइट के खंभे हैं खंभे में लाइट भी फिटिंग है ये कोई स्टेडियम है या फिर बहुत बड़ा मैदान है और इसके चारों ओर घेरा किए हैं।